ये कुछ लाइटें हैं जिन का नज़र आ रहे हैं और ये गाय खड़ी हैं एक और ये ऊपर अच्छे तार नज़र आ रहे हैं कुछ पाइप हैं।

इसमें दूध छा दही सब प्रकार का सामान मिलते हैं इसपे एक पोस्टर लगाये हैं।

इस फोटो में यह कोई मकान है इस मकान में अच्छा शीशे लगे हुए हैं और यह --

इस फोटो में यह कोई हैंगर है इस घर में ये बाहर ही चार पांच पंखे लगे हुए हैं।

इस फोटो में येह कोई एक घर है इस घर में ये बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है अंदर।

पोस्टर पे कुछ शब्दों में लिखा गया है और ये अच्छी बिल्डिंग है मोटी बिल्डिंग है।

और टेबल कुर्सिया लगी हुई है व्हाइट कलर की टेबले हैं ऊपर उधर साइड में कुछ डब्बू भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में यह कोई एक कार्यक्रम है इसमें यह सोफे लगे हुए हैं कुर्सियां लगी हुई है।

इस फोटो में ये कोई एक होटल है इस होटल के बाहर ये टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं।

इसमें सोल में बहोत सारी फल सब्जी फ्रूट सब पड़े है ऊपर यह पोस्टर लगा --

इस फोटो में यह कोई दुकान है इस दुकान में यह कुछ सामान पड़ा है।

इस फोटो में ये कोई एक दुका ये कोई एक घर है उस घर में बाहर ए_सी लगी हुई है दो।